और यहां पे झरना तालाब के अंदर झरना बनाया गया है।

यह एक सैलून है इस सैलून का नाम है डेविंग सैलून ।